मुझे रेक टेबल रखी हुई है मुझे देख रही है।

मुझे कुछ घर दिख रहा है उस पर टेल ठेला ऐला खडे हुए दिख रहे है मुझे कुछ गाड़ी दिख रही है खड़ी--

कुछ गिलास रखी हुई कुछ दीवाल में टंगा हुआ--

मुझे कुछ मकान दिख रहा हुआ है कुछ मकान में लाइटें लगी हुई दिख रही है।

मुझे कुछ मकान दिख रहे हैं मकान में कुछ बोर्ड टांगा दिख रहा है।

बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है कुछ पेड़ पौधे लगे हुए--

कुछ ट्रक खड़ा हुआ है कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है कुछ--

बिछे हुए है कुछ पेट्रोलपंप बना हुआ है।

कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है कुछ कार खड़ी हुई है कुछ बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है कुछ--

मुझे कुछ मकान दिख रहा हुआ है मुझे कुछ बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में कुछ लिखा है कुछ मुझे पंखा--

म मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिख रा है मुझे कुछ सीटे --

बोर्ड दिख रहा है मुझे बोर्ड में कुछ लिखा हुआ मुझे कुछ दुकान खुली हुई दुकान में कुछ--

टंगे हु टंगे है कुछ मुझे गाड़ी--

चाय दे रहा है आदमी कप रखे हुए मुझे कुछ समान लगा हू रखा हुआ दिख रहा है मुझे कुछ पंखे लगे हुए दिख रहे हैं।

मुझे कुछ मकान बना हुआ दिख रहा है मकान में कुछ आदमी--

खिड़कियां लगी हुई है कुछ नारियल के पेड़ लगे हुए है कुछ टैंट गढ़ रहा है कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक औरत कुछ कर रही है एक बोर्ड लगा है।